नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जीवित रहें --

बनाने में बहुत सारे पैसे मजदूर बौ --

मंदिर है दुर्गा मंदिर मे सब कोई पू--

मुहर्रम होता है बहुत सारे आदमी होते है वैसे ही --

लोग आज यहां जीवित है पेड़ शुद्ध हवा पेड़ --

यहा पे एक अच्छा सा टब हैपेड़-पोधे है --

उतरा है यहाँ पे तीन चार आदमी बैठ --

करते हैं बिज़नेस करते हैं उसी से हमलोग --

इसमें सब जाते है बहुत सारे आदमी जाते है मेले के जैसा --

पेट्रोल से ही चलते हैं पेट्रोल अगर नहीं रहे तो --

पढ़ाई सब के लिए अच्छा होता है हमारे बच्चे --

पढ़ाई सा क्यों कि पढ़ाई ही जिंदगी है |

हमारे बच्चियों को अगर हमारे बच्चियों का --

बाल अगर बड़ा-बड़ा हो जाता है तो हमलोग त्योहार --

चाहे जैसा भी घर हो घर तो घर ही होता --

नदी है नदी के चारों ओर जंगल है पेड़-पौधा --

अगर हमलोग के घर में सब्जियां नहीं रहती हो तो हमलोग के --

तो मछलियों को हमलोग पकाते हैं।

बहुत सारे गाड़ियाँ हैं आदमी है रेलवे स्टेशन --

पटरी पे है। पटरी से रेल जाते हैं उसके तरफ।

पेड़ हम लोग को शुद्ध हवा देता है।

यहाँ पे किसी का बर्थडे हो रहा है।

मंदिर के पास एक मैन रोड है रोड से --

खाना खाने के लिए जाते है अगर कोई हमलोग --

हम लोग का घर ऐसा नहीं है पर काश हम हम लोग --

के ऐसे घर हम लोग भी बनए।

पर घर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं।

मजदूर घर बनाने के लिए रहते है घर --

हम लोग भी होटल में जाते हैं चाय पीते हैं।